यहाँ एक घर है। घर के ऊपर रेलिंग है घर मे एक लॉन है।

ये एक डेली नीड़ बाजार सा है। का नाम इसपूर्ति फेेमिली बाजार गजरवाला लिखा हुआ है।

ये एक थिएटर है जिसमें चेयर्स दिख रही हैं।

ये एक छोटा सा मंदिर है जिसकी बाउंड्री नीले रंग की है। छोटा सा गेट है ऑरेंज कलर का।

यह एक प्लेटफार्म है रेलवे लाइन जा रही है।

अंडरगारमेंट मिलते हैं ग्रिल लगी हुई है बाहर पटिया पड़ी हुई है।

काफ़ी सारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं। गमले रखे हुए हैं। जालियाँ लगी हुई है।

एक इंडिकेटर का पार्ट पड़ा हुआ है। इंजन ऑयल का डब्बा रखा हुआ है। सामने रोड है। उसपे वेहीकल जा रहा है।

ये एक शोपिंग काम्प्लेक्स सा बना हुआ है जिसके बाजु से रस्ता (रास्ता) जा रहा है| यहा बहोत (बोहोत) सारे नाम लिखे हुए हैं| उनपर एयर टी_सी_एल बजाज वैल्यू प्लस --

यह एक बोहोत बड़ा ग्राउंड है। आसपास कई मकान हैं। लोग इसमें क्रिकेट खेल रहे हैं काफी घास उगी हुई है बाउंड्री लाइन की रोप दिख रही है।

आसपास इमारतें बनी हुई है। एक बीटीएस टॉवर दिख रहा है। पानी की टंकी दिख रही है।